इस चित्र मे हमें एक नाई की दुकान का दृश्य दिखाई देता है जहाँ लोग केश सज्जा कराने जाते हैं।

इस चित्र मे हमें एक भव्य और खूबसूरत प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है जहाँ पर --

हैं तो कुछ युवा और महिलाएं भी हैं चर्च को सजाया गया है टेंट लगा हुआ है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

काफी साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है एक लंबी सड़क दिखाई देती है और उसके पीछे नदी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमे विजय पुस्तक भंडार के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ दो केरम बोर्ड भी लगे हुए हैं एक व्यक्ति अपनी दुकान को साफ सजा रहा है।

इस चित्र में हमें अजीम सैलून के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक व्यक्ति ग्राहकों का इंतजार करता दिखाई देता है एक स्टैसनरी की दुकान दिखाई देती है जहां बहौत सारे पैन वगेहरा रखे हुए हैं।

कोपिया रखी हुई है ये व्यक्ति नीले रंग की शर्ट पहन के बेठा है।

अंदर बहोत सुंदर गुब्बारों की सजावट दिखाई देती है लाइटों का बहोत अच्छा प्रयोग किया गया है ।

इस चित्र में हमें एक नदी दिखाई दे रही है जहाँ कुछ महिलाएं छट पुजा करती नज़र आ रही हैं सामने एक बड़ी सी नाओ लगी हुई है जिसपे झंडे लगे हुए हैं कुछ लोग स्नान कर रहे हैं।

तो कुछ लोग मछली खरदीने के लिए इंतज़ार में खड़े हैं बाजार में बहौत सी साइकिलें दिखाई दे रही हैं आस-पास घर दिखाई दे रहे हैं।

ये एक नाई की दुकान के अंदर का द्रिश्य है जहाँ बहुत से उद्पाद रखे हुए हैं।

इस चित्र मे हमे एस.बी.आई ए.टी.ए.म के बाहर से जाते कुछ युवा दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग ए.टी.एम. के बाहर सीढ़ियों पे बैठे दिखाई देते हैं ।

इस चित्र में हमे एक मन्दिर के बहार का द्रश्य दिखाई दे रहा है जहाँ कुछ बच्चे कौतुहल से अब चीजों को देख रहे हैं।

इस चित्र में एक व्यक्ति किताबों की दुकान में काम करता दिखाई रहा है।